हमें कोई वर्कर नहीं दिख रहा--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी बिल्डिंग की--

उनके ऊपर पोधै भी लगे हुए दिख रहे है।

वर्कर और एक कस्टमर भी दिखाई दे रहा है।

देखने से यह हमें किसी--